नीचे टाइल्स लगी हुई है सामने म एक चड़ाउत बनी हुई है वहाँ ब्लैक कलर की वाइट कलर की पुती हुई है।

बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं।

स्टेज जैसा बना हुआ है गाड़ी खड़ी हुई है पेड़ पौघे लगे हुए है अंदर पेड़ पौधे बहुत सारे लगे हुए है अंदर एक वाइट कलर --

एक सामने टेबल लगी हुई है खिड़की लगी हुई है।

यहाँ एक रेल की पटरी बनी हुई है सामने बहुत सारी लाइट लगी हुई है।

में दो तीन लड़कियां बैठी है लड़के बेठे हुए है उन्होंने झंडा हाथ में ले रखा है और बीच में माता जी लड़की बनी हुई है उनके हाथ में गिटार है सामने एक --.

अ पर्दा लगा हुआ हैं नीचे दरी बिछी हुई है।